और सामने ही जिम के कुछ इक्विपमेंट्स भी रखे हुए हैं।

यह एक दुकान है और दुकान का दरवाजा शीशे का है।

ये लकड़ी के सोफे और बेड की दुकान है यहां लकड़ी की कुछ अलमारियां है और पीछे कुछ टूटा हुआ लकड़ी का सामान है।

ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहां काउंटर पे एक आदमी खड़ा है।

पीछे खड़े हैं और उनके सामने कुछ गाना बजाने वाले लोग अपना सामान लेकर बैठे हैं जैसे ढोलक पियानो और--

और इनके ऊपर नीले कलर कुछ शामियाने जैसे बने हुए हैं।